कमरे के अंदर ढेर सारे सामान रखे हुए हैं जो नीले रंग के हैं।

छवि में ढेर सारे बड़े बड़े नट रखे हुए हैं नट का रंग सफेद है।

यह छवि एक दुकान के बाहर का तस्वीर है दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर है।

गड्ढे के अंदर कई तरह के छड़ और सीमेंट रखे हुए हैं गड्ढा काफी बड़ा है।

ईमारत के दीवार पर ढेर सारी खिड़कियां है खिड़कियां शीशे की हैं।

छवि में मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल का रंग काला है।

लीची का रंग गुलाबी लाल और सफेद रंग का है।

छवि में बड़ी टोकरी है टोकरी का रंग नीला है।

दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर है पोस्टर पीले और लाल रंग का है।

सलून के दीवार पर पंखे और गुब्बारे चिपकाए हुए है।

व्यक्ति ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है।

कमरा के दीवार का रंग काला और भूरे रंग का है।

छवि में एक बड़ी इमारत है इमारत की दीवार का रंग नीला और सफेद रंग का है।

दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर है पोस्टर पर विशाखा डेयरी पार्लर लिखा हुआ है जो लाल रंग से लिखा हुआ है।

साइड में एक व्यक्ति है जो रंग बिरंगा वस्त्र पहना हुआ है।

पोस्टर पर होटल बंधन एवं मैरेज हॉल लिखा हुआ है जो सफेद रंग से लिखा हुआ है।

छवि में बड़ी इमारत है इमारत की दीवार का रंग नीला और सफेद रंग का है।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

छवि में ढेर सारे लोग है लोग ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है।

मैदान में एक घास और पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे हरे रंग के हैं।

वाहन का रंग नीला और काले रंग का है।

भोजन रंग बिरंगे रंग का है जैसे कि नारंगी पीला और हरा रंग।

यह छबि एक जिम के अंदर का तस्वीर है जिम के दीवारों का रंग पीला और भूरा रंग का है।

जिम के अंदर कई तरह के इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो काले और पीले रंग के हैं।

मैदान में कई तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे हरे रंग के हैं।

नदी में आस पास कई तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे और घास फूस हैं।

में ढेर सारे लोग है लोग ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है।

कमरे के अन्दर एक बड़ा दरवाजा है दरवाजा भूरे रंग का है।

कमरे के अंदर ढेर सारे सीमेंट के बड़े बड़े बोरे रखे हुए है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं।

छवि में दो व्यक्ति है जो व्यायाम कर रहे है जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए है जैसे कि नीला काला और सफेद रंग का।